इस तस्वीर में एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें एक कूलर दिखाई दे रहा है और सामने की ओर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है नीचे एक कुत्ता सोता दिखाई दे रहा हैं।

बगल में एक झण्डा फेहराने वाला गुंबज दिखाई दे रहा है कुछ व्यक्ति वहाँ चलते नजर आ रहे है एक बाइक खड़ी हुई हैं।

बैनर लगा हुआ है ऊपर की ओर एक बोर्ड रखा हैं सामने कुछ टेबल और कुर्सी लगी हुई हैं बगल में एक डाक खाना बना हुआ हैं।

इस तस्वीर में एक स्कूल दिखाई गई है जिसके बाहर कुछ साइकिल और बाइक खड़ी हुई है बाहर की ओर कुछ ब्यक्ति खड़े हुए है।

इसकी बिल्डिंग का कलर पीला और गुलाबी कलर का है इनके सामने कुछ झीलियाँ लगी हुई है।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

इस चित्र मे एक जिम दिखाई दिया गया है जिसमे कई सारे मशीने रखी हुई है पीछे की ओर एक व्यक्ति आता हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक पानी से भरी नदी टाइप का कुछ दिखाई दे रहा हैजिसमें एक बस और कार जाते हुए दिखाई दे रही हैं जिसमे एक व्यक्ति चलता नजर आ रहा है जो की पन्नी पहना हुआ है।